सड़क के पास एक रेड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत सारा फ्रूट है।

पेट्रोल पम्प बड़ा है ऊपर बड़ी-बड़ी लाइटे लगी हुई हैं।

दृश्य दिखाया गेया है। यहाँ पर सजावट की गई है जैसे शा शादियों में स्टॉल लगे हु हुए होते हैं।

गुरुद्वारे जा किसी मंदिर का लग रहा है दिखने में।

एक आदमी गड्डे में खड़ा है और दो आदमी खड़े हैं।

और मंदिर ठीक ऊपर बहुत सुन्दर-सुन्दर बगवान की मूर्तियाँ बनाई गई।

इस तस्वीर में जो दृश्य दिखाया गया --

जहाँ पे कोई भी नहीं है।

यहाँ पर बहुत सारी म बड़ी-बड़ी मछलियाँ रखी हुई हैं और एक महिला भी मछली खरीदने आई है शायद से। बहोत सारे आदमी भी खड़े हैं दुकान में।